यहां पे बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है--

और काफी कलरफुल कुर्सियां लगी हुई है यहां पर--

काफी बाहर देखिए उन पर खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियों--

यहां पर काफी सारी भीड़ दिखाई दे रही है और काफी सारे लोग हैं जो सब्जियां फल फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं।

वहां पर सामने एक बैनर है वहां पर लिखा हुआ है जया--

बैनर लग रहा है जिस पे पता नहीं कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे देखिएगा फ्रेंड्स यहां पर सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का।

ये देखिएगा फ्रेंड्स ये काफी सारे यहां पर फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं काफी बड़ा हॉल है ये और यहां पर देखिएगा--

कितने सारे यहां पे एप्पल है संतरा है।

ये देखिएगा फ्रेंड्स यहां पर एक टेंपो दिखाई दे रहा है।

और यहां पर देखिएगा आज आजू-बाजू ऊपर देखिएगा टू प्लेट्स भी दिखाई दे रही है।

ये देखिएगा फ्रेंड्स यहां पर एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है ट्रेन की खिड़कियां नजर आ रही है दरवाजे नजर आ रहे हैं।

जहां पर देखिएगा बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और यहां पर--

और काफी सारा पीछे देखिए ब्लू ब्लू कलर के नीले नीले पर्दे लगे हुए है काफी सुंदर स्टेज दिख रहा है।

और पीछे देखिएगा बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

साइड में देखिएगा लाइन से सुपारी के पेड़ लगे हुए हैं बड़े-बड़े लंबे-लंबे और मैदान में कितनी सुंदर हरी-हरी घांसे दिखाई दे रही है ऊपर नीला नीला आसमान भी नजर आ रहा है।

यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स एक काफी सुंदर सी नर्सरी दिखाई दे रही है और काफी सारे पौधे लगे हुए हैं यहां पर ढेर सारे गमलों में।

यहां पर और ऊपर रेलिंग भी दिख रही है।